और यहां पर दो कंप्यूटर पड़े हैं जो की बहुत ही बड़े-बड़े हैं और ब्लैक कलर के हैं।

जो दुकान है फाइनेंस की एक महिंद्रा नाम की दुकान है वो बंद है।